पर एक ये ओपिन ग्राउंड दिखाई दे रहा है जिसकी स्पेस ज्यादातर घासे नहीं लगी हुई है इसकी दूसरी तरफ एक और छोटा सा ग्राउंड दिखाई दे रहा है जिसमे बहोत सारी घासें लगी हुई है।